ये एक दुकान है जहाँ पे एक रस्सी टंगी हुयी है जो हरे कलर की है।

यहाँ पे बहोत सारे मसाले टंगे हुए हैं जो हर तरह के हैं। मैग्गी है।

ये रॉयल बुक सेंटर है जहाँ पे बुक का बिक्रेता होता है।

मिथिला बुक सेंटर करके नाम लिखा ह ।

एक आंटी फ़ोन पे बात कर रही है उनके हाथ में एक ब्लैक कलर का पर्स है।

घर में एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा --

ऊपर आसमान भी है।

कोई स्कूटी से कोई बाइक से कोई पैदल --

जो कि सड़क पर खड़ा हुआ है।

यह एक ई-रिक्शा है जो कि बैटरी से चलता है।

और इस पे कैमरे भी लगे हुए हैं।

वॉली बॉल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं।

फैन भी दिख रहा है।

इसके बगल में एक क्लिनिक भी है जिसका नाम ब्रह्मल क्लिनिक --

ये एक खेत है जिसमें ट्रैक्टर --

खेत का जुताई कर रहा है।

ये बहोत बड़ा साउंड है। जिसका नाम शर्मा औडियो करके है।

स्कूल ड्रेस में योगा करते हुए नज़र आ रही है।

नीचे शिव शक्ति क्लॉथ हाउस --

ये एक सरकारी हॉस्पिटल है। जिसमे बहुत सारे मरीज --

और यहाँ पे गार्ड वी अंकल है।

और नीचे तीन लोग और खड़े हुए हैं।